उसमें एक प्लास्टिक का स्पून भी लगा हुआ है पानी का गैलेन भी साथ में रखा हुआ है बगल में पीने के लिए।

पार्क है पार्क में एक झूला लगा हुआ है उसमें एक बच्ची बैठी हुई है झूला पे पीछे घूम कर देख रही है।